ये कोई रूम जैसा नज़र आ रहा है जहा पर एक डबल बेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है और वही पे--

ये एक मैदान है यहा आस पास बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।

ये ये एक स्विमिंग पूल नजर आरहा है जहा बच्चे खेलते हुये नजर आ रहे है।

और यहा काफी पाणी है और यहा स्लाइड्स भी नजर आ रही है।

एक आदमी भी खड़ा दिखाई दे रहा है और वहा पर वज़न काटा भी मौजूद है।

ये कोई मैदान नज़र आ रहा है जिसके पास मे शेड नज़र आ रहा है वहा काफी लोग देखने के लिए आये गये है।

ये एक दीवार पर काफी तस्वीरे ब्लॅक अँड व्हाइट तरीके से लगाई गयी नजर आ रही है उसिके साम--

यहा एक घर है। जो हरे कलर का है। उस घरका गेट भी लगा हुआ है।

ये कोई पानी वाली जगह नज़र आ रही है जहा पर काफी पानी है यहा पर--

जिसके उपर से इलेक्ट्रिक तार जा रही है यहा नीला नीला आकाश के नीचे है।

यह एक हार की शॉप दिखाई दे रही है जहाँ पर तीन अलग अलग कलर के हार बिक रहे हुए है यहाँ पर कुछ--

ये कोई सुपर बजार नज़र आ रहा है जहा पर राशन बिक रहा है यहाँ पर एक ट्रौली भी--

बड़े बडे पेड़ भी नज़र आ रहे है। कू फूल के पेड़ भी नजर आ रहे है। कुछ लोग यहा एक्सरसाइज़ और वॉक करते हुवे भी दिखाई दे रहे है।

हा यहा सियेट के बड़े बड़े टायर्स लगे हुए दिखाई दे रहे है। यहा काफी टायर लगे हुए है।

एक फोर व्हिल्लर नज़र आ रही है जिसका सामने का बोनट पूरा का ओप हुआ हुआ है।